उसके ऊपर भी पुल बना हुआ है।

हरा कलर का सोफा दिखाई दे रहा है। डाइनिंग टे --

उस सैलून के बाहर एक आदमी खड़ा हुआ है।